नज़र आ रहे हैं आए हुए हैं फिर कैरट भी रखा हुआ नज़र आ रहा है नज़र आ रही है।

रहे हैं यहाँ पर फ्रेम लगाए हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ प्यारे - प्यारे यहाँ पर लोग नज़र आ रहा है।

फे जंगल नज़र आ रहा है जंगल में ऊपर आसमान नज़र आ रहा है बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं नीचे जंगली जानवर --

यहाँ पे पत्ते सुखे गिरे हुए नजर आ रहे हैं पत्थर नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर बच्चों के झूले हैं यहाँ पे संडे है।

नज़र आ रहे हैं लाइट नज़र आ र ऊपर बादल छाए हुए नज़र आ रहे हैं हैं यहाँ पर --

यहां पे माइक नजर आ रहा है यहां नजर आ रहे हैं या फिर लोग नजर आ रहे हैं यहां पर--

नज़र आ रहे हैं नज़र आ रहे हैं --

फिर लोग हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं आपस में कुछ लोग कुटुंब के जो एक लोग आ --

कुछ बैनर लगाए हुए हैं चेयर नज़र आ रहे हैं सामने टेबल नज़र आ रहे --

यहाँ पर कुछ बच्चे वाइट कलर की शर्ट पहने हुए है ब्लैक पेंट पहने हुए है हाथ में झण्डे लिए हुए हैं पर्पल --

ऑरेंज ग्रीन है वाइट और पिंक कलर का शॉप है यहाँ पर शॉप पे बच्चों के जूते भी मि --

चश्मा नज़र आ रहा है एक आदमी डरा हुआ है ये देख --

सारे विंडो नज़र आ रही है नज़र आ रहे हैं पोस्टर लगाए हुए हैं।